चिड़िया घर में देखो ये कौन से जानवर खड़े हुए हैं ? दोनों ज़ेबरा है और ये एक लोहे के नेट के अंदर खड़े हुए हैं।

और देखो इस मैदान में कितने सुंदर घास हैं।

ये एक लोहे का गेट दिख रहा है जो काले रंग का है इस गेट के अंदर एक छोटा-सा कमरा भी बना हुआ है।

ये देखो दो कपल खड़े हुए हैं सामने कुछ इमारत बनी हुई नजर आ रही है इस इमारत के साथ एक पेड़ बना हुआ है।

देखो दीवार के इस तरफ ये कितने सारे पेड़-पौधे लगे हुए है घास भी दिख रही है।

ये एक बड़ा-सा मैदान दिख रहा है मैदान के अंदर कोई जीना जानवर है जो की घास खाने के लिए आया हुआ है।

ये एक बड़ा सा मैदान है और मैदान में एक ईमारत बनी हुई है। ईमारत के सामने दो बसें खड़ी हुई हैं। एक सफ़ेद रंग की है और एक हरे रंग की है।

ये अकेला क्यों बैठा हुआ है यहाँ पर देखो काले रंग का भालू।

पैर दिख रहे हैं जो नाख़ून भी दिख रही हैं पत्थर का बना गए हैं बहुत सारे डीजाईने बनाए गए हैं पर जो मुकुट है जो गोटी गोटी टाइप मे बने--

ये भी कोई शहीद स्मारक बना हुआ है या फिर कोई स्कूल की दीवार पर कोई बोर्ड लगा हुआ है।

और इसकी चोंच बिल्कुल छोटी सी है तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये कौन सा पक्षी है। इसका नाम क्या है।

तो आप ये बताइए ये जंगल है या पार्क समझ नहीं आ रहा।

बहुत लंबी और चौड़ी आप देखिये यहाँ पर एक छोटा-सा तालाब भी बना हुआ है।

सामने देखिए किसी देवी की प्रतिमा बनी हुई है और यहाँ पर देखिए ये लकड़ी से बनी हुई छत पर नक्काशी कितनी सुंदर दिख रही है।

यह कौन सी देवी मंदिर में बैठी हुई है नहीं पता कुछ दिखाई दे नहीं रहा --

सामने ये रेत के टीले हैं या फिर पहाड़ी बनी हुई है कुछ भी समज में नहीं आ रहा और यहाँ पर बहुत ज्यादा हरियाली दिखाई दे रही है।